यख फण कुछ मकान छन यख फण हरयूं भरयूं डालु छ यख पर कई सारा हरयां भरयां डालान यखी फणि गाड़ी कर भी छ दिखेण लगीं।

यख मा जी कई सारा बड़ा बड़ा हरयाँ भर्यां पहाड़ छ दिखेण लग्यां यख पर जु छ एक पहाड़ पर बड़ु बारिकु डुगू छ दिखेणु।

ओजी कई सारा बड़ा-बड़ा हरा भारा पहाड़ छे दिखने लगया पहाड़ का बीच पर ही एक को बगड़ लगी।